यह तस्वीर कार्यालय के हैं बाहर मे एक कार खड़ा हुआ हैं अंदर मे एक बाइक हैं।

खुला हुआ है रास्ता है पिछे भी बोहोत सारी बिल्डिंग है।

कुछ का-- गाड़ियां खड़ी हुई है।

यह तस्वीर कटघोरा के डाकघर का है दिन का समय है डाकघर के सामने में शेड बिछा हुआ है।

तस्वीर मे बोहोत सारे वृक्ष दिख रहे है दिन का समय लग रहा है आसमान भी साफ दिख रहा है पीछे बिल्डिंग है।

इसके ऊपर जाली लगे हुए है सामने में एक मैदान है जिसमें बहुत सारे झाड़ी घांस है आसमान बिल्कुल साफ लग रहा है दिन का समय है।

यह तस्वीर केंद्रीय विद्यालय कोरबा की है कॉलेज का गेट बंद है बाहर में भी कुछ छोटी-छोटी झाड़ियाँ बगल में है।

दिन का समय लग रहा है दुकान के साइड मे आम के पत्ते से झालार लगाए हुये है।